वहाँ पर क्या किया है सब कुछ वहाँ पर एगो बस खड़ा --

कुछ यहाँ पर अच्छा से नहीं दिख रहा है लकिन फिर भी दिख रहा है उस साइड में पहाड़ है पूरा बड़ा वाला पहाड़--

इआ यहाँ पर मोबाइल का दुकान है एक मोबाइल का दुकान है यहाँ पर कवर उभर सब कुछ है मोबाइल भी है ईरफ़ोन भी है सब कुछ --

यहाँ पर मेला और ऐसा क्या हो रहा कुछ पता नहीं लकिन अच्छे से सजाया हुआ है।

बड़ा मस्त बना हुआ है ।